इस तस्वीर मे दिखाई जाने वाला दृश्य विक्की मेडिकल हॉल की है।

इस तसवीर मे दिखाई जाने वाली दृस्य एक डैम की है डैम का लोकैशन पूरी तरह से मालूम नहीं है ।

बट डैम का नजारा देखने मे काफी खूबसूरत लगता है ।

इस तस्वीर में दिखाया गया दृश्य बुद्धा फ़ास्ट फूड की है जो की बोधगया मे स्थित है यह फास्ट फूड का दुकान काफी फेमस है।